इसमें आयुर्वेदिक संबंधी दवाइयों की छवि भी दिखाई दे रही है इसके आसपास बहोत सारे मेडिकल स्टोर है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह एक--

आज बहोत अच्छे से सजाया गया है।

सामान यूज में आने वाले सामान रखे हुए है पीछे एक फ्रिज है जिसमें कोको कोला वगैरा रखे हुए हैं।

पीछे सजा कर मूर्तिया तथा कुछ सामान को रखा हुआ है।

खेलने के लिए कुछ रखे हुए हैं यहां बहोत सारे पेड़ पौधे हैं तथा एक चेयर भी है जो--

यह छवि एक पहाड़ी क्षेत्र की प्रतीत हो रही है जिसमें--

बैंचों पर बैठे है यहाँ सेटिंग घर के अंदर की प्रतीत होती है जिसमें --

इस छवि में होटल में सेवा एवं आइ_सी_आइ_सी_एफ बैंक को दिखाया गया है।

घर के बाहर दो गाड़िया पार्क है।

पहाड़ों के बीच से बहती हुई एक झरने की तस्वीर को दिखाया गया है।

और इन्हें बहोत अच्छे से सजाया गया है।

इस छवि में एक ट्रक को प्रदर्शित किया गया है जिसमें भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है।

और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है।

आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे है।